कपबोर्ड मे कुछ मसाले साइड मे फेवीक्विक टंगे हुए है।

इस तस्वीर मे एक बड़ी सी द्वार दिखाई दे रहा है उसके पास में दो छोटे-छोटे भी द्वार दिखाई दे रहे है उसके सामने बहुत सारी सीढ़ियाँ --